सामने एक दुकान दिखाई दे रहा हैं दुकान में कांच के ग्लासेस बने हुए हैं।

ब्लैक कलर का बोर्ड दिखाई दे रहा है साइड में एक ब्लू रंग का खिड़की लगा हुआ है।

ब्लैक कलर का टेबल दिखाई दे रहा है।

ब्लैक टायर नजर आ रहा है।

सामने भूरे रंग का टेबल नजर आ रहा है जिस पर बॉक्स रखा हुआ है।

इसका दिवाल लाल और व्हाइट रंग का है दीवाल में ब्लू कलर का बोर्ड लगा है जिसमें है प्पी दिवाली लिखा हुआ है।

उपर सीलिंग में ब्लैक पंखा नजर आ रहा--

साईड में ब्लू येलो पिंक कलर का फ्लावर से सजा हुआ नजर आ रहा है।

एक ब्राउन कलर का बेड लगा हुआ है जिसकी चादर क्रीम कलर की है दो तकिये नजर आ रहे हैं।

साइड में रेड चेयर लगी हुई नजर आ रही है।

चार दुकान नजर आ रहा है जिस पर दो बोर्ड में--

यह हॉल है जिसमे बहोत सारी ब्लू और व्हाइट टेबल लगे हुए नजर आ रहे हैं जिस पर लोग बैठे हैं।

एक फ्रिज है लाल रंग का जिसपे कोको कोला लिखा हुआ है।

यह कपड़े की दुकान है जिसमें कबर्ड के अंदर बहुत सारे कपड़े--

जिसमें दो वाइट फैन लगी हुई है लाइट लगी हुई है।

एक आदमी ब्लू कलर की बॉटल ब्लैक बैग लिए जा रहा है बाहर।